इसके डेकोरेशन से लग रहा है कि यहां पे--

ये एक डांस क्लास का फोटो लग रहा है जहाँ पे लड़कियाँ या लेडीसे डांस प्रेक्टिस कर रही हैं।

बीच में क्रॉस जैसा है हम लोग के भी--

और दो तीन टेडी बीयर्स दिख रहे सामने घड़ी लगी हुई कार्टून वाली--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

ये किसी स्कूल का फोटो लग रहा है स्कूल के ग्राउंड का फोटो ।

दो चार आदमी दिखाई दे रहे हैं जो बात कर रहे हैं।

ये शायद रेलवे स्टेशन का लग रहा है।

ये फोटो किसी वॉटरफॉल को दिखाई दे रहा है।

यह किसी के घर और किसी की दुकान का फोटो लग रहा है यहां पे बहुत सारी सारीज टंगी हुई हैं।